देखिये यहाँ पे एक छ्छ्लने वाले सीढ़ी जैसे बने हुए है और यहाँ के ग-रंगो बिरंगो का गाछी लगे हुए हैं।

ये यहाँ पे ढेर सारा झरना है जैसे- जिसे बोलते है नदी का झरना और--

देखिए यहाँ पे एक आदमी उ पहाड़ के ऊपर में बैठ कर फोटो खिंचा रहा है और बगल में नीचे में हरियाली कितना खूबसूरत है और उससे आगे पहाड़ भी है।

यहाँ पे फूल का बगीचा है और फूल में पानी पटा रहे हैं। एक ठु लड़की वो दिखने में काफी खूबसूरत लगी रही है। यहाँ पे रंगों बिरंगों का फूलो दिखाई पड़ रहे हैं।